यहाँ बड़ा सा मैदान दिख रखा है।

कुछ लोग दिख रहें हैं।

दू पा एक पुल पर कुछ बच्चे कुछ लड़कियाँ खड़ी हुई हैं।

हर सेल्फ पर स्कूल के शूट बूट टाई मोज़े रखे हुए है।